इसमें आंटू खड़े हैं और बहुत सारे लोग भी खड़े हैं।

बैठे हैं जिसमें से एक आदमी के चेहरा पे फेशियल लगा है और वो फो --

यह एक बहोत बड़ा मकान है।

और इस पर सीढ़ी रखा है और वह--

और लिखा है डॉक्टर गुप्त मल्टपे मल्टी प्लेसियन डेंटल ।

उसमें छोटे छोटे पेड़ लगाया गया है और--

इसमें पंखा भी है और कुछ --

एक बाइक भी लगा है और गाय जा रही है औ--

यह एक बहोत बड़ा बस स्टेशन हैं।

और यहां पर करकट भी--

इसमें बहोत अच्छा सा सामयाना--